ये मेरे घर पर शीलन आ रही थी मैंने मित्रियों को बुलाकर पट्टी खिंचवाई है।

यहाँ पे स्कूल के बैग स्कूल की पेंसिल स्कूल के पेन स्कूल की कॉपी स्कूल की ज्योमेट्री बॉक्स --

और फिर हम एक एलसीडी खरीद लेंगे एलजी काफी अच्छी --

ये अंकल जी उसे चला रहे हैं पाँच सौ रूपये किराया लिया है।

बीच मे ना कोई पेंट है ना कोई कलर है ना पानी के ना मोम के ना किसी चीज के --

पैसे पूछते है चलो। कित्ते का हुआ अंकल --

यहाँ सफाई कितती है और यहां कोई रहता नहीं है।

और इसके कलर का कलर भी ब्लैक है काफी अच्छा है।

दस सीढ़ी कम से कम पंद्रह सीडी तो है।

और यहां पर पेड़ भी मिलते हैं नकली वाले जिन्हें टोइल्स बोलते हैं देखो --

आज हम आये है अपने है के बाजार --

कोई धूमधुपान और ये देखो हमारे आया --

वो हमने बैठने के लिए कुर्सी डाल रखी है।

और ये सीशे लगे हुए हैं इसमें सभी लोगों को काम भी मिलता है जो पढ़े लिखे लोगों के लिए और --

ये हमारे यहाँ का एयरपोर्ट के यहां पहले बहुत मिट्टी उड़ा करती थी।

चाय काफी यहां की चाय काफी स्वादिष्ट है।

आज हमपे पैसे खत्म हो गये तो हम इस पुराने ए.टी.म. से दस हजार रुपये कैश निकालने आये हैं।